इस हाइवे पर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

और इसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

मुख्य द्वार पर कुछ पाईपे पड़ी हुई है और इन पाइपों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए--

जरूरत से ज्यादा लोगों ने सवार किया हुआ है।

इस ऑफिस को काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है यहां पर काफी सारा स्पेस हैं।

यहां पर आसपास छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए गए इसको नेचुरल --

जिससे इसको नेचुरल लुक मिल रहा है दीवार पर वाइट कलर का पेंट हुआ हुआ है और ग्रे और वाइट कलर की--

इसमें सारे ईनी इन्ग्रीडिन चॉकलेटस के रखे गए हैं जिसमें की आरियों बिस्किट है कीटकैट चॉकलेट है।

आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन देख कर बनवा सकते --

टेबल चेयर काफी अच्छी है यहां पर आप ऑनलाइन --